यह दृश्य हमारे सामने एक--

पिक्चर हॉल नज़र आ रहा है जहाँ पर बैठती है। यह स्टाफ रूम बोलते है।

इसके सामने यह बड़े सारे दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यह फूल भरी हुई है आदमियों से।

यह एक छोटा टाइप का बैंक है जो कि गाँव में है।

लड़को के लिए ये ऑफिस बनाया गया है वहां पर बाहर एक जे.सी.बी. खड़े हुऐ है ये मुन्सिपल कॉपरेशन --

ऑफिस है जहां पर ये खड़ी है।

चर्च के अंदर का दृस्य नजर आ रहा है जहाँ पर एक चर्च के में अंदर एक हेड --

का फोटो है ये छोटा बच्चा है इसने काले कपड़े पेहन रखे है इसके घर पर गुब्बरे लगा रखे है और काले रंग का गेट है।

इसकी बनावट का कार्य चल रहा है। ये कार्यक्रम चलवा रात में --